आसमान दिख रहा है आसमान कई कलर का दिख रहा है नदी दिख रहा है दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा है।

ड्रेस पहने हुए हैं उजला कलर के लाल कलर के पीला कलर के ब्लू कलर के दिखने में बहुत अच्छा --

लाल है उजला है बुलु है हरा --

ट्रैक है पेड़ दिख रहा है बहुत सारे मोटरसाइकिल हैं आदमी है थैला लिए हुए है रिक्शा है ।

यह जिम है जिम बहुत

यह एक फिटनेस जी.वाई.एम. सेलिब्रेशन लिखा हुआ है इसमें आदमी का फोटो है।

एक बुक सेंटर है यहाँ पे बहुत सारी बुक रखा हुआ है पे रखा हुआ है।

जिसमे मकान दिख रहा है मकान बहोत सुंदर है बोर्ड लगा हुआ है यह बोहोत डिज़ाइन से बनाये गए है --